इस इमेज मे यहां पे पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी और उसका हेलमेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक रोड रोलर दिखाई दे रहा है और एक पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने एक दुकान दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक वेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और गेट भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पे एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है और बाहर बोरे मे सामान भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक वाटर पार्क नजर आ रहा है जहां पर कुछ बलूंस रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर देखिएगा यहां पर इस इमेज में सड़क दिखाई दे रही है और कुछ लोग भी चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर रोड दिखाई दे रही हैं जहां पर कुछ मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर बैंक दिखाई दे रहा है और कुछ लोग लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर तालाब दिखाई दे रहा है जहां पर दो मछली काले रंग की तैर रही है।

इस इमेज में यहां पर सब्जी मंडी दिखाई दे रही है और ढेर सारे बोरे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रंगोली बनी हुई है और गेट के पास में पोस्टर भी टांगा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज मे यहां पर देखिएगा एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी लगे हुए नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे गमलों में सो प्लांट्स लगे हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज मे एक पिंजरा दिखाई दे रहा है यहां पर दो पक्षी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।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

इस इमेज में एक दुकान दिखाई दे रही है और नीचे गमलों में शो प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है और यहां पर खिड़की भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जो बालों की कटिंग करता हुआ नजर आ रहा है।